और इसमें दो कार दिखाई दे रही है पार्किंग भी और ऊपर लाइट भी जल रही है।

मुझे यहाँ यूनियन बैंक दिखाई दे रहा है जिसका लाल और सफेद कलर का बहुत बड़ा बोर्ड है और एक शटर लगा हुआ है जो ग्रीन कलर का है।

यहाँ पर मुझे कॉलेज दिखाई दे रहा है जो की ज़ी टी_वी कॉलेज नाम से है इसका कॉलेज का बोर्ड सफेद और पीले कलर का है।

और एक टेडी के पास में झंडा भी नजर आ रहा हैं।

यहाँ एक आयुक्त कार्यलय दिखाई दे रहा है जिसका सफ़ेद कलर का बोहत बड़ा बोर्ड है इसपे लाल कलर में लिखा हुआ है।

यहाँ एक छोटा सा स्विमममिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें चार से पाँच मुझे बच्चे दिखाई दे रहै है।

दो सारस बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं उनके पीछे जालियाँ लगी हुई है।

ट्रैन के पास में मुझे एक दीवाल दिखाई दे रही है बाउंड्री जो की ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है।